इस पिक्चर में खेत को दिखाया गया है जहां किसी चीज़ की बोआई की गयी है इस खेत के बगल मे कैकट्स के पौधे बहुत सारे लगे हुए दिख रहे हैं।

और अंदर बहुत सारे लड़के दिख रहे है और बड़े बेड पेड़ भी नजर आ रहे है दीवारों पर कुछ कुछ लिखा हुआ है लाल रंग से।